बैंक ऑफ़ बड़ौदा जो की अभी सीढियाँ हैं और सीढियाँ से ली गयी तस्वीर है जो की बैंक अभी खुली है और बिंक बैंक में थोड़ी भी भीड़ नहीं है आप आसानी से जा कर खाता खोला सकते हैं धन्यवाद।